ध्न्तुली से सिधा सिधा जाना पड़ता है वा --

और सामने जाके ऐसे चलके थोडा सा छोटा सा मंदिर भी है।

पल्वाडी के ये उस साइड है।

यह इंजिनीयर वालों के लिए --